यह वाटर पार्क में बहुत से लोग --

शौक से भी लोग यहाँ पर घूमने क लिए आते हैं।

यह झरना को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं।

यह एक एचडीएफसी बैंक है।

पाए जाने की संका होती है।

अर्नव नगर निगम के पास है।

यह वाटर पार्क के लिए --

यह एक गाँव है। यह गाँव में बहुत से लोग होली खेले हुए हैं।

यह पैलेस के अंदर बहोत सी पेंटिंग्स और डिज़ाइनर चीजे बनाई गई है। यह पैलेस बहोत ही खूबसूरत है।

यह एक वालरू घाट एर्पोट है। यह वालुरु घाट एर्पोट में हवाई विमान यहां पर लैंड करते है।

यह एक दुकान है। यह दुकान में का नाम यश मोटरसाइकिल्स पार्ट्स दुकान है। यहाँ पर सस्ता कंपनियों के --

मैदान है। यह मैदान में आर्मी फ़ोर्स खड़े हुए हैं। यहाँ पर ब्लैक कमांडो और पुलिस की --